और ये बहुत ही अच्छा नजारा है | यहाँ पे खेत है पेड़ है पानी का पाइप है और यहाँ पे कुर्सी भी लगा हुआ है और डिजाईन बना हुआ है।

और ये बहुत ही अच्छा रेडीमेड का दुकान है इसमें काफी सारी लाईट लगे हुए हैं ।

और यहाँ पे काफी अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे काफी सारे घर है दिखने में के ये घर चार फ्लोर का है यलो कलर और वाईट कलर का पेंट किया हुआ है।